यहाँ पर कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं एक घर दिखाई दे रहा है एक आदमी दिखाई दे रहा है जो की खड़ा है उसके सर--

दिखाई दे रहा है पीछे एक बिल्डिंग बनी हुई दिखाई दे रही है बिल्डिंग का कलर सफेद दिखाई दे रहा है।

काले रंग की जलियां दिखाई दे रही है और वहां पर लाल रंग का पेंट दिखाई दे रहा है आप--

यहाँ सफेद रंग के पिलर भी दिखाई दे रही है पानी का रंग काला दिखाई दे रहा है पीछे पेड़ दिखाई दे रहे है जो कि हरे कलर --

रिक्शा खड़े हुए दिखाई दे रहे हैसाइकिल खड़ी हुई दिखाई दे रही है पास में एक बिल्डिंग भी दिखाई दे रही है इसमें लोहे के टायर लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ पर पेड़ लगे हुए दिखाई दे रहे है नालिया दिखाई दे रही है पत्तियां दिखाई दे रही है पेड़ों में पत्ते दिखाई दे रहे है।

सुबह पांच बजे से आठ बजे तक शाम पांच बजे से आठ बजे तक --

इसके अंदर बहुत सारा सामान रखा है दुकान के बाहर तीन लोग खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं कैरम रखा हुआ है लकड़ी के बैट रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ पर एक बस स्टैंड दिखाई दे रहा है यहाँ पर काफी सारी बसें खड़ी हुई दिखाई दे रही है।

तीन बोर्ड लगे हुए दिखाई दे रहै हैं बोर्ड ऊपर लगा हैं जिसपर ऑन इंडिया लिखा हुआ दिखाई दे रहा हैं।